ये एक चित्र है इसमें एक बड़ा सा घर हैजमीन हैआसमान हैमट्टी है।

जमीन हैं आसमान हैं खिड़कियें हैं मिट्टी हैं धूप हैं।